जहां पे लिखा है कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस ।

नीचे दुकान में चीजे टंगी हुई है।

मेले में एक महेल का फोटो बनाया गया है।

यहां पे एक बड़ा बोर्ड नजर आ रहा--

स्टैचू को ड्रेसेस और लहंगे पेहनाए।

यहां पे दिखाई दे रहा है एक बड़ी सी पेंटिंग ।

ये एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही है।

गार्डन में मेटल का एक्सरसाइज का बना हुआ है।

जहां पे दो छोटे बच्चे खड़े हैं।

नीचे खाने-पीने की चीजे लो--

साइड में लिखा है कल्याण कोचिंग क्लासेज ।

ये एक रेस्टोरेंट दिख रहा--

लंबे लंबे पाइप लगे हैं जिनमें पौधे लगे हुए।

बैंड भी रखी हुई है और उसकी स्टीक रखी है --

एक दीवार दिख रही है दीवार से लगे बड़े-बड़े ब्राउन दरवाजे दिख रहे हैं।

ये एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है कोल्ड ड्रिंक की दुकान छोटी साइड में बनी हुई है।

अंदर फ्रीजर में बोहोत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है।

ये एक बैंक दिखाई दे रहा है। बँक मे बहोत सारी भीड़ है।

फ्रंट को डेकोरेट किया गया है आगे दो छाते लगाए गए हैं।

इस दुकान में एक लकड़ी के प्लाई का डिस्पले किया गया--

दीवार पे टाइल्स लगाई गई है।

पूरी लॉबी क्रीम कलर के फर्श से बनाई गई है।

यहां पे काफी सारी दुकानें दिख रही हैं।

पेट्स लाइफस्टाइल पुरा बोर्ड ब्लैक हैं।

दुकान में कांच पे डिस्प्ले किया गया है।

टेबल पे गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं।

उनपे लड़कियां सो के एक्सर्साइज कर रही है।

किन फ्रिजरो में कोल्ड ड्रिंक्स फिल की गई है।

बहोत सारे लैंप डिस्प्ले किए गए हैं।

किराने की दुकान में बहुत सारी चीजें डेली नीड्स की रखी हुई है।

लकड़ी के शोरूम में लकड़ी की फ्रेम्स बनी हुई है।

वहीं पे तीन चार बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं।

एक लड़के ने एक डंडा पकड़ा हुआ है दूसरे बच्चों ने कैंडल्स हाथ में पकड़ रखी है।